इसमें लाइट लगी हुई हैं पक्का फर्श है।

और म्म जाली के बाहर बड़े-बड़े हरे-हरे वृक्ष ल --

देख सकते हैं आप सभी यहाँ पर एक चौड़ी सी नदी है जिस पर काफी बड़ा सा पूल बना हुआ है।

यह एक डैम है। जिसमें बहुत बड़ी ओवरफ्लो बनाई गई है। जिसमें बहुत सारा ओवरफ्लो के द्वारा पानी --

बाहर लाया जा रहा है और दो व्यक्ति यहाँ पर फोटोग्राफी के लिए खड़े हैं।

काफी सुंदर यहाँ पर व्यू हरे-हरे पेड़ लगे हुए है। रेलिंग लगी हुई है।

चारों तरफ पहाड़ हैं। काफी सुंदर डैम है। बोहोत बड़ा-सा डैम है। हरियाली है। सुंदर --

हरी हरी वृक्ष लगी हुई है चारों तरफ। बिल्डिंग बनी हुई है। इस ग्राउंड में कोई कार्यक्रम या फंक्शन चल रहा है।

ब्लैक एंड व्हाइट यह इमेज है।

यहाँ टेबल पर ग्लास रखे हुए हैं प्लेट्स रखी हुई हैं।

अ इसपर पेंट हो जाएगा तो और भी सुंदर दिखने लगेगा। म् बड़े म् --

देख सकते हैं आप सभी यह एक कोई सरकारी कार्यालय या कोई इस्कूल का --

काफी सारी खिड़कियाँ लगाई गई हैं हवा के लिए। इसमें कुछ पेंटिंग भी की गई है जिसपर कुछ लिखा भी हुआ है।

पीले कलर से पेंटिंग है इस म्म पूरे भवन में।

मिल रहे हैं संतरे केले आम उम्म अनार।

एप्पल बोहोत सारे केले और अलव डोलचिंगो में यह रखी हुए हैं जमे हुए हैं।

और यहाँ पर फर्स काफी गिला दिखाई दे रहा है। बारिश का मौसम लग --

यह एक दुकान है जनरल स्टोर अ जिसमें रंग बिरंगी राखियंयाँ बेची जा रही हैं।

यहां पर बर्थडे का डेकोरेशन किया गया हो जिसमें बैलून लगाए गए हैं जोकि परपा --

और यह छत पर डेकोरेसन किया गया है बर्थडे का।

ए-ए ऐसा लगता है देखने से जैसे कोई स्कूल का यहाँ पर बच्चों के लिए कोई स्-क्-स्-कार्य सिखाया जाता होगा।

और अलग-अलग अलमीरा टाइप की यहाँ पर बनी हुई है। सभी के साथ एक-एक चेयर रखी हुई है।

और पक्का है यह घर। घर के बाहर काफी हरियाली है।

वहाँ बहोत सारी इसमें लाईटें लगी हुई हैं। म्म बरामदाज बने हुए रेलिंग लगी हुई हैं। नीचे इसके शटर बनाए गए हैं। जीने लगाए गए --

बिल्डिंग के बाहर काफी बड़ा गार्डन बनाया गया है। जिसमें हरी हरी घास लगी गई हुई है।

कुछ पीले कम कच्चे हुए टमाटर हैं कुछ --

बोहोत सारे आजू-बाजू भीड़ लगी हुई है और यहां पर पानी बहता हुआ आ रहा है जो कि हरे कलर का है।

चल रही हैं आगे की हुई जा आगे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ आती हुई दिखाई दे रही हैं। एक बिल्डिंग बनी हुई है।

यहाँ पर न्यू एम.एस. हेयर सैल्यून न् है।

एक प्रतिछालय केंद्र भी यहाँ पर बना हुआ है। जहां पर कुछ कुर्सी रखी हुइ है जिस पर यात्री यहाँ पर बैठ सकते हैं आराम कर सकते हैं।